कुछ जाली लगी हुई है लोहे की।

पीछे को जिन्ना भी है।

मोटर है कुछ स्टूल रखे हुए हैं।

लाइट लगी हुई हैं कुछ पीछे घर सा भी है।

जो मोटर है पाइप है लकड़ी है।

एक साइकल है पीछे एक बड़ा सा पेड़ है।

पीछे खेल कूद हो रहा है।

यहां पर एक दुकान है दुकान में कुछ कट्टे रखे हुए हैं।

पीछे एक टप रखा हुआ है पीछे एक शेटर है लीले कलर का।

पीछे लाइट जल रही है छत पर लाइट जल रही है।

यहां पर एक हॉल है हॉल में कुछ बोर्ड लगे हुए हैं।

यहां पर एक लाल गेट है पीछे यहां पर दो जने डिग्गी सही कर रहे इंजन सही कर रहे है।

कुछ लाइट दिख रही है अंदर ब्लू कलर की।

बाहर कुछ रंग बिरंगे छोटे छोटे पेड़ हैं जिनपे फूल आ रहे हैं।

दीवार पर अलग अलग रंग के लाइट लगी हुई है बड़ी बड़ी लाइट है कैमरे हैं।

अंदर बहुत सी बाइक खड़ी हुई है।

यहां पर कुछ बच्चे योगा कर रहे हैं।

साइड में एक बाइक खड़ी हुई है।

एक थमला बना हुआ है।

ऊपर एक डोरी दिख रही है।

टेबल पर एक वाटर बोतल रखी हुई है स्विच बोर्ड है।

यहां पर एक बैंक्वेट हाल है।

पीछे पानी भरा हुआ है।

कुछ बच्चे खेल रहे हैं।

टीन सेट गिरा हुआ है।

कुछ नीचे सरिया पड़े हुए हैं।

एक लेडीज पीछे खड़ी हुई है।

एक घर है जिसमें दो तीन खिड़की दिख रही है।

एक गोल सा रखा हुआ है पीले कलर का।

बस पर लिखा हुआ है एन_यू_इ_जी_ओ ।

घर के सामने तीन चार गाड़ी खड़ी हुई हैं एक वैन हैं।

पीछे आदमी खड़े हुए हैं।

कुछ रस्सी पड़ी हुई हैं कुछ सीढ़ी है।